केलोवेरा का पेड़ भी लगा हुआ है। यहाँ पर गुलाब का फूल और व्हाइट कलर के गुलाब के फूल के पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक कॉलेज बना हुआ हैं जोकि कथ्थई कलर से बना हुआ है। यहाँ पर पीले कलर से बाउंड्री बनी हुई है।

और यहाँ पर कॉलेज के ऊपर कॉलेज का नाम लिखा हुआ है।

मडिया बनी हुई हैं जिसमे बोहोत सारे गेट हैं यहाँ पर।

और यहाँ पर कुछ दूध की बाल्टियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर एक और घर बना हुआ है।

कुछ चाट फुल्की के ठेले लगे हुए हैं और यहा पर एक हरे कलर से बैनर लगा हुआ है और एक साईकल है जिसपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यहाँ पर रनिंग मशीन और सायकिल भी रखी हुई है।

जिसमे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक साईकिल खड़ी हुई है और एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है।